देखिए यह एक शहर है एक मंदिर बना हुआ है उसमें बहुत बड़ा एक चित्र है मूर्ति बना हुआ है।

--आप देख रहे है यह कमरा में है यहाँ पे खिड़की लगी हुई है आदमी बैठे है और कंप्यूटर है।

और बहुत अच्छी-अच्छी फूल खिला है घास फुल है और ईटा से घेरा गया है फूलों को अच्छा भी लग रहा है यहाँ पे घर भी है।